यहां पर सल- मेलन चल रहा है देवराम चल रहा है कोई बात नहीं यहां पर सब कुछ ठीक ठाक है।

देखिए यहाँ बहुत सारे औरत है बच्चे है| आदमी सब आये हुए है| एक घर है| शायद इसमें कुछ चीज़ शायद बैंक है| शायद बैंक मैं इसका पैसा निकाल ने के लिए शायद आये होंगे।